यह एक घर है घर के नी प्रतीक्षाला है प्रतिछाला के निचे एक बहुत सारे कार गाडी खड़ा हैं और अगल बगल में पेड़ पौधे भी हैं और गाडी ऑडी भी है और--

यह एक ब बस स्टैण्ड है ये बहुत सारे बस भी दिख रहे है बहुत सारे आदमी भी है और घर भी बना हुआ है और आदमी भी है साइकिल भी हैं।

और उस वहाँ पास बहोत सारे आद आदमी लोग दिख रहे है आसमान भी है आसमान बहोत एक नंबर दिख रहा है हरा-भरा एक नंबर पेड़-पौधा और हरियाली छाई हुई है।

आसमान भी दिख रहा है और दरवाजा भी दिख रहा है और एक आदमी भी दिख रहा है और देखने में बहोत अच्छा दिख रहा है और एक लाल झंडा भी लगा हुआ हैं।

यह एक मैदान है जो मैदान में बहुत सारे पानी दिख पानी भी हैं।

हरियाली भी है जोकी देखने मे बहोत अच्छा दिख रहा है सुंदर भी दिख रहा है लाजवाब --

यह एक यह एक आधा अधुरा मकान हैं।

यह एक कारखाना है कारखाने के अंदर बहोत सारे लोग भी दिख रहे है और बहोत सारे बोड़ी में--

यह एक घर है जो घर के बाहर सजाए हुए हैं गाड़ी घोड़ा दिख रहे हैं और दो --